और काफी अच्छे जगह भी मंदिर बना हुआ है और ऊपर बादल भी है।

यहाँ पे काफी सारे लोग नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लड़कियाँ तो कुछ लड़के यहाँ पे रात का माहौल है।

और एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहें हैं। काफी लोग बैठे हुए हैं। यह पंखा भी लगा है।

यह कोई तालाब का फोटो है जो तालाब दिन में है पीछे साइड काफी पेड़-पौधे हैं जो हरे कलर के हैं।

यह कहीं हॉस्पिटल का फोटो है जिसमें एक इंसान तीन गैस सिलेंडर रखे हुए हैं और नीचे साइड सफेद कलर का टाइल्स लगाया है।

यहाँ पर कुछ कला का प्रयोजन किया जा रहा है यह एक स्कूल में जहाँ सारे लोग एक लाइन बैठे हुए हैं किनारे साइड खिड़की में रॉड लगा हुआ है यह एक दरवाजा भी है।

और यहाँ पे काफी सारे लोग टोपी लगाए बैठे हैं।

और पीछे शायद एक दिवाल है जी रेड कलर का है और उसमे गणतंत्र दिवस लिखा हुआ है।

जो रेड कलर का और व्हाइट कलर का उपयोग किया गया है यहां काफी सारे भीड़ बने है और काफ़ी सारे लोग अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।

एक इंसान है जो दुकान के बाहर खड़ा हुआ है| पीछे यश भैया का चित्र पोस्टर बहुत बड़ा-सा बना हुआ है ।

दु ऊपर साइड दुकान का नाम बाल दा-दाढ़ी का शोरूम है| यहाँ पर नीचे साइड पीछे साइड कांच का एक है ।

एक इंसान गुफे के अंदर घुस रहा है जो गुफा काफी छोटा है| ये गुफे में काफी रंग - बिरंगी चित्र बने हुए हैं।

यहाँ एक नदी का फोटो है उसके ऊपर एक सूरज है और एक हरा-भरा पेड़-पौधे दिखाए दे रहे हैं।